वहाँ पे सब शादी हो रहा है मड़वा है एंड बैठा हुआ है सबलोग लेडिस है।

मस्त लग रहा है भाई गज़ब।